और कुछ वो लगी हुई हैं ग्रिल ।

और बहोत सारे नीचे पत्ते सूखे पड़े हुए हैं और कुछ झाड़ियां हैं।

और यहां पर एक बाल्टी रखी हुई है।

और सफेद कलर का दुकान है ये।

तर लगे हुए हैं चट्टानें हैं पेड़ पौधे हैं सुंदर सुंदर --

लकड़ी लगी हुई है यहां पर।

अ सामने बहोत लंबी सड़क है पेड़ पौधे हैं।

ब्लैक कलर की खड़ी हुई है।

यहां पर तीन गिरी हुई है।

सुंदर सुंदर और बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और हरे कलर के कपड़े पहन रखे है चश्मे लगा रखे है सारों ने।

और यहां पर एक बहुत बड़ा ये पीछे बिल्डिंग है।

सफेद कलर की कार हैं नीचे फरस हो रहा है सारे में।

जय भीम लिखा हुआ है।

और वह व्यक्ति जा के मुड़े हुए हैं।

यहां पर नीचे एक पीछे प्लेन खड़ी सफेद कलर की।

और कुछ नील पेंट हो रहा है इसके पंखों पर।

और पहली वाली की लाइट बली हुई है।

और यहां पर मेन गेट है।